ऑफिस में बहोत सारी डेकोरेशन भी कर रखी है।

और इसमें बहुत सारे बैलून भी रखे हुए दिखाई दे रहे हैं।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

एक बिल्डिंग दिखाई दे रही है जो की सन सिटी कलर की दिखाई दे रही है।

बिल्डिंग मे बहुत सारे सीसे भी लगे हुए दिखाई दे रहे है।

और गेट का कलर व्हाइट कलर का भी दीखाई दे रहा--

यहां पर बहोत सारी मैज भी रखी हुई हैं।

यहां पर इसका दरवाजा खूंटों से बना हुआ दिखाई--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

गाड़ी का कलर वाइट कलर का दिखाई दे रहा है।

और येलो कलर का दिखाई दे रहा है यहां पर बहुत सारे सोफे भी लगे हुए दिखाई दे रहे--

यहां पर एक गैलरी दिखाई दे रही है।

अंदर बहुत सारा सामान भी रखा हुआ दिखाई दे रहा है।

बहुत सारा समान दिखाई दे रहा है।

छोरों में का आइटम हो रहा दिखाई दे रहा है यहां पर बहुत सारे--

ये सामने एक घर दिखाई दे रहा है यहां पर मेरे को अति सुंदर दिखाई दे रहा है।

घर मे बहुत सारे पेड़ लगे हुए दिखाई दे रहे हैं इधर में--